और बगल में मिट्टी की खूदाई चल रही है।

जिसपे ए पूरे लकड़ी की कारीगरी की गई है और इसके --

बट एक बच्चा हाफ सोक सार्टस पहना है एक --

यहां एक रास्ता है रास्ते के सामने फुटपात है।

बाहर मे एक डस्टबिन भी है जो नीले रंग का जो एक किनारे पड़ा हुआ है।

जो एक कातार से लगी हुई है।

यह जिम है और इसमे जिम के बहुत सारे इक्विमेंट्स रखे हुए है।